अगल बगल में भी घर नजर आ रही है और बहुत से पेड़ पौधे भी लगी हुई नजर आ रही--

जहां पे बहुत से व्यक्ति बैठे हुए भी नजर आ रही हैं।

और एक त्रिशूल भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

जहां बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

स्टेज को फूलों से सजाया गया है।

इसका नाम ज्ञान निकेतन इस्कूल है।

और आसपास मे बहोत से पेड़ भी लगे हुए--

इसका रंग पीला और काला नजर आ रहा है।

महिलाएं भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक पहाड़ नजर आ रहा है।

और छोटी छोटी घास भी उगी हुई नजर आ रही--

और दो बाइक भी लगी हुई नजर आ रही है।

गेट भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक प्लेटफा प्लेटफार्म भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक स्कूटर लगी हुई नजर आ रही है।

और घर भी नजर आ रहा है।

दृश्य में एक स्कूल का ग्राउंड नजर आ रहा--

है और बहोत से टेबल भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा है।

जहां पे एक साइकिल भी चलती हुई नजर आ रही--

आस पास मे बहुत से पेड़ भी लगे हुएं दिखाई दे रहे हैं ।